एक रूम दिखाई दे रहा है रूम के अंदर एक --

बगल में एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है कुछ दुरी पर कुछ आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कचरा इक --

मुझे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल में एक फिसल पट्टी दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की ब्लू और ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है।

रास्ता दिखाई दे रहा है सामने कुछ कुर्सियांए दिखाई दे रहीं है जिनपर आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है बगल में एक नीले कलर का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है जिसपर ई-पर्यटक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक त्रिकोण दिखाई दे रहा है जिस में चार प्रकार की घास दिखाई दे रही है बीच में एक सर्किल दिखाई दे रहा है सर्किल में भी कुछ घास लगी हुई दिखाई दे रही है उस के दोनों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने से दो आदमी आते दिखाई दे रहे हैं।